एक अंकल भी देख रहे हैं ये एक विज्ञान बुक सेंटर सेंटिनरी है।

और ये सारा सामान लकड़ी का है और यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा खुबसूरत खुबसूरत सामान है लकड़ी का।

जहां पर के टमाटर और मिर्च और प्याज और जो कि खीरे या फिर मटर वो --

ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर एक --